इस चित्र मे एक बड़ा सा पर्यटक मैदान दिखाई दे रहा है बेंच पर एक महिला दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक कंकाळ का चित्र है।

यह चित्र एक शौचालय का चित्र है उसके ऊपर एक पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

यह चित्र एक सुनहरे रंग की मूर्ति दिखाई दे रही है किसी भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे कुछ चार पहिय्ये वाहन दिखाई दे रहे है एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

इस्के पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसकी लाल टीशर्ट दिखाई दे रही है।

कुछ लड़के बास्केटबॉल खेलते दिखाई दे रहे है। एक लड़का लाल टीशर्ट मे दिखाई दे रहा है।